यहाँ पे एक ग्राउंड बनाया हुआ है उस ग्राउंड को पुरे चारों तरफ से पीले कलर की जाली से घेर दिया गया है उसके बाहर तीन लाल कलर की कुर्सी रखी हुई है और एक पीले कलर का टेबल रखा हुआ है इस ग्राउंड के अंदर एक --

यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खड़े है और उस वो दूल्हा दुल्हन अ --

बच्चों की लडको की बड़ो की गर्दी है यहाँ पे एक पर्दा लगा है सफ़ेद कलर का शायद उस पे कुछ दिखाने वाले है वहा पे देखने के लिए बहुत गर्दी--

ये एक पहाड़ी है पहाड़ी पे बहुत सारे झाड लग पेड़ लगे हुए है हरे हरे और उस पहाड़ी में से पानी का झरना बह रहा है वो देखने के लिए बहुत सुंदर दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद हरे हरे झाडो के बीच में सफ़ेद सफ़ेद पानी बह रहा है।